इधर एल_सी_डी दिख रहा है।

ब्लैक कलर का कुर्सी है एक साइड में भी कुर्सी रखा हुआ है।

उस साइड एक पंखा दिख रहा है।

यह रूम है। रूम में एगो कंप्यूटर लगा हुआ है।

रोड के बाहर गाड़ी खड़ा है।

देवघर नगर निगम आपका स्वागत करता है लिखा हुआ है।

एक बोलबम वाला आदमी है।

वासुकीनाथ भी लिखा हुआ है।

यह बाबा विश्वनाथ नगरी बनारस की फोटो है।

एक लाइट लगा हुआ है। बड़ा दुठो हो दिख रहा है।

यहां पर चौकी भी लगाया हुआ है--

आगे खजूर का भी वृक्ष दिख रहा है।

और इधर स्टील का ग्रिल है।

यहां बहुत सारा लाइट जला हुआ है।

एक फोर व्हीलर खड़ा है।

साइड में एक सीढ़ी दिख रहा है।

नीचे बहुत सारे पार्ट है।

आगे एक हॉल जैसा दिख रहा है।

यह गार्डन हैयह गुलमोहर गार्डन नाम का गार्डन है।

जिसमें दो गो गेट लगाया है।

साइड में एक बिजली का पोल दिख रहा है।

यहां पर औरत सब खड़ी है और लड़का है।

पर इस साइड में भी एक वृक्ष है।

हर एक चदरा का घर जैसा बना हुआ है।

यहां आइडिया कंपनी का लोग बैठा हुआ है।

उम सर बगल में एक फोटो लगा हुआ है।

एक आदमी उधर से आ रहा है।

विभिन्न प्रकार के गाड़ी का फोटो हैं।

एक गाड़ी के फोटो में लड़का खड़ा है।

एक गेट हल्का सा खुला है।

आगे साइड में काउंटर है वहां काउंटर के पीछे एक एल_सी_डी दिख रहा है।

लकड़ी आकर के बना हुआ है गेट जैसा और उधर टाली का घर भी है।

सामने एक तार दिख रहा है जिसको मेढ़ कहते है।

यह सब शायद चर चर्च के अंदर जा रहे हैं।

मैं राधा रानी और कृष्ण बांसुरी पकड़े हुए हैं।

पीछे साइड ग्रील लगा हुआ है।

जोकि एक पेट्रोल का टैंकर लगा हुआ है साइड में एक पोल है।

और साइड में एक पिलर जैसा खड़ा है।

और उस साइड दवाई दे रहा है।

यहाँ पर एक फोर व्हीलर गाड़ी खड़ा है।

इस तरफ साइकिल में आदमी स्टैंड लगा रहा है।

यहां लिखा हुआ है गिन्नी किराना इशटोर और माजा का लोगो भी लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारा पानी है।

और कपड़ा का सजावट है।

साइड में पेड़ हैउसमें लीची बल्ब लगा हुआ है।